ये मैरिज हौल है। ये देखिए ये लड़का को बैठने वाला चेयर भी काफी अच्छे है।

और चेयर के झाड़ भी लग रहा है कि लड़के के पिछे से अ उसे चेहरा पर लेताए और काफी बहोत एसी बाते है इसमे --

शिवलिंग का ये फोटो है काफी अच्छा फोटो हैबोहोत ही शानदार फोटो है ये--

और एक कब्र नजर आ रहे है देखिए फिर आगे क्या हैइसके----